यहां पास की लकड़ी के पॉट बनाए हुए हैं और डालिया बना के रखी हुई है उधर एक कुर्सी रखी है उधर एक लड़की बाउंड्री के बाहर खड़ी है सफेद कलर की दीवार है उधर हरे हरे पेड़ पाद है।

यहां सामने एक डिजाइनदार दरवाजा है जो ब्लैक और वाइट कलर का है अंदर की फर्स सफेद कलर की है उस पे एक टेबल रखा हुआ है अंदर एक को टेबल कुर्सी है जो रेड कलर की है ऊपर एक दीवार ल नीले कलर की छत है ऊपर लाइट जल रही है और ए_सी लगा हुआ है।

यहां बहुत सारी लेडीज बैठी है और दो लेडीज खड़ी है इधर एक आदमी खड़ा है नीला शर्ट पहने है सामने की दिवाली सफेद है ऊपर बहुत सारी लाइटें जल रही है सफेद कलर की सामने बहुत सारे पोस्टर लगे हैं दीवार पीले कलर की है उस परे कुछ सफेद-सफेद तीन बॉक्स रखा है।

यहां जमीन में आग जी जलाए हुए हैं इधर एक आदमी खड़ा है काली चल्ट पहरे हुए उधर एक मेज रखी है सामने--

यहां अलमारी पे कुछ सामान रखा है जो कि बहुत सारे किराने के हैं एक फ्रोजी कलर का डब्बा रखा है नीचे पीले कलर के डब्बे में कुछ है--

यहां बरामदा है नीचे फर्स है ऊपर में बरामदे का सफेद कलर है पीछे बहुत सारे पेड़ है इधर एक--

यहां रोड पर एक आदमी बैक टांगे जा रहा है सफेद शल्ड पहने है इधर एक आदमी खड़ा है।

यहां टेबल पर एक फोन रखा है उधर एक कंप्यूटर रखा हुआ--

यहां बीजें लगी हुई है खाने की टेबल लगी है जिस पर बहुत सारी मिठाइयां रखी है उधर कुछ बर्तन रखे--